आए हुए हैं वहां पे एक बूढ़ा इंसान वहां पर बैठा हुआ है एक बच्चा है वहां पर जो की खेल रहा है और दो लोग यहां पर बैठे हुए हैं।